और ये घर भी तीन चार मंजिल ही है और ब्लैक कलर की रेलिंग हुई है और शायद लाइट पिंक कलर से और कुछ येलो से पुता हुआ है| नीचे वाली मंजिल थोड़ी गन्दी हो रही है।